कार के सामने कुछ मशीन रखी हुई नजर आ रही है साथ में पीछे कुछ टिन के टुकड़े भी दिखाई दे रहे है सामने जमीन पर एक पाइप भी पड़ा हुआ दिखाई --

सामने कुछ डिब्बे भी नजर आ रहे है नीचे एक अलमारी भी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र मे एक मैदान नजर आ रहा है।

यहा पर सामने लोगों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक रास्ता नजर आ राहा है जिसके उपर बोहोत सारी मिट्टी और कुछ रेत का ढेर दिखाई दे राहा है रस्ते के उपर --